यहां सामने की दीवाल पे केक सेवन लिखा है।

जिसका नंबर है टी ऍफ़ जीरो नाइन ई के टू जीरो थ्री फाइव ।

एक रेस्टोरेंट है रेस्टोरेंट काफी सुंदर है यह रेस्टोरेंट--

सामने एक फोर्ट का गाड़ी लगा है कार का नंबर है यू_पी छह पांच बी बी सेवन थ्री नाइन थ्री --

ये एक और कटोरे में चम्मच के साथ दाल है एक और कटोरा है जिसमे सब्जी रखा है यहाँ एक टेबल पे रखा है।

ये एक मैदान है मैदान में एक झूला लगा है झूला लोहे का है।

दूर में कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं यहाँ सुबह का दृश्य है और हलकी-हलकी रोशनी आ रही है।

यह देसी नस्ल का है इसकी पूछ काफी लंबी है और गर्दन भी काफी बड़ी --